फूलों की दुकान है फूलों की शॉप है यहां तरह-तरह के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं।

बगीचा है पेड़ों का पौधों का पेड़ पौधों का बगीचा है फ्लावर्स फूल--

और कितना अच्छा काउंटर है कितना अच्छे से डिफरेंट टाइप के.--

क्या मस्त रोड का नजारा है यहां बाइक्स है ऑरेंज कलर का इंडियन ऑयल का स्टीकर है।

ये मंदिर है ये एक छोटा सा मंदिर है।

भारत पेट्रोलियम भारत का भारत पेट्रोल पंप --

ब्लैक कलर का स्पर्श है ब्लू कलर का फ्रंट है खिड़कियां है ब्लैक एंड सिल्वर कलर की गाड़ी है वाइट कलर की --

जिम है का नजारा है जिम है रोंग जय श्री राम।

हार्डवेयर शॉप है हार्डवेयर की दुकान है यहां पे कीला वगैरह पाइप से लेकर सब कुछ मिलता है.

हॉस्पिटल का कॉरिडोर है ऑपरेशन थिएटर के बाहर का।

वाइट कलर का टेबल पर ब्लू कलर का वाटर कूलर है उसपे गिलास है।

पीछे बहुत सा काफी कारपेट है ऑरेंज कलर का कार्पेट है ब्लू कलर का कार्पेट है।

रूम है एक घड़ी हैगोल्ड कलर की गोल्डन कलर की घड़ी है।

ब्लैक कलर का का विंडो जैसा है खिड़की--

एक डोर है ब्राउन कलर का शीशे वाला--

वाइट कलर का है रेड कलर का है ब्लैक कलर का है वाइट कलर का है सब तरीके के हैं अलग-अलग प्रोटीन पाउडर --

एक आदमी ने शर्ट पहना है ब्लू कलर का ब्लैक कलर की जींस बहुत अच्छा लग रहा हैयहां का पूरा लाइट वगैरा देख सकते हैं र्स घूम रहे हैं।

अर्जुन गेस्ट हाउस ए_सी एंड नॉन ए_सी रूम्स अवेलेबल अर्जुन गेस्ट हाउस है अर्जुन नाम का गेस्ट हाउस है।

पीले कलर की मालाएं टंग रही है बाहर बाइक खड़ी है एक आदमी जा रहा है एक्सपोर्ट किंग की बाजू में शॉप है जिसमें बॉइज के कपड़े--

रोड पर ऑरेंज कलर की गाड़ी चल रही है वाइट कलर की गाड़ी चल रही है बाकी ग्रे कलर की सब गाड़ियां पार्क में पार्किंग में खड़ी है।

नेक्सा सर्विस का आँ नीचे पार्किंग पर ट्रक चल रहे हैं बाजू में गाड़ियां हैं।

पिज्जा शॉप है पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा अवेलेबल है आइसक्रीम एंड शेप्स है व्हाइट कलर का फैन है चेयर है ग्रीन कलर का टेबल है।

यहां रूम्स अवेलेबल है डिजिटल कंप्यूटर का बाजू में डिजिटल कंप्यूटर है।

है ज्वेलर शॉप है सेट रखे हैं बाजू में कैमरा है।

मैरून कलर का देख सकते हैं मैरून कलर की--

लीड रखी है देख सकते हैं डाटा केबल है चिप है मेमोरी कार्ड --

ग्रोसरी शॉप है वेफर ग्रोसरी शॉप डेली यूज शॉप वेफर्स है घी है ।

दूध है सब अवेलेबल है आइसक्रीम है।

घर की घर से रिलेटेड डेली यूज शॉप डेली यूज का सामान की शॉप है।

पेटीएम का स्कैनर है बाजू-बाजू तस्वीरें लगी है देख सकते हैं।

वो साइड पे वॉशरूम का वॉशरूम है ग्रीन ये आपका ब्लू कलर की शेड में कैंटीन टाइप है।

कपड़ों का शॉप है अ ब्लैक कलर का सोफा है अ वाइट कलर का काउंटर है।

बहुत अच्छे ऊपर वाइट कलर का पंखा है और गोल्डन कलर की छत है लाइटनिंग है वाइट कलर की--

ए_के फिटनेस जिम ए_के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं।

साथ ट्रॉफी रखी है येलो कलर के बालून है बीच में सेंटर में ब्लैक कलर का बलून है एक बाजू में और बलून है जो रेड कलर का और येलो कलर का है।

देख सकते हैं मिक्की माउस है सेलिब्रेशन कर रहे हैं।

एल_ई_डी एल_ई_डी एल_ई_डी पार्ट्स का शॉप है।

ब्लैक कलर का बॉक्स रखा है ब्लू कलर का बॉक्स रखा है वाइट कलर के प्लकिंग बॉक्स रखे हैं।

रोड साइड पे ढाबा है ढाबा के वो उस साइट रोड पर एक ट्रक चल रहा है अजमेर अमृतसर अमृतसर जम्मू उदनपुर--

ओ साइड पे ट्रक है वाइट कलर का ऑरेंज कलर का ब्राउन कलर का--

और बाजू में पेड़ हैं रोड के --

इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैइलेक्ट्रॉनिक शॉप है।

चर्च है चर्च में बहुत सारे लोग हैं चर्च का साइन है प्लस का और सब कैंडल जला रहे हैं लड़के लोग --